दिखाई दे रही है। यह अक्सर ऐसा चित्र नवरात्रे के समय हमें देखने को मिलता है।

यह एक बर्फीले क्षेत्र का दृश्य है।

यह किसी रेस्तरों का चित्र है।

जहां पर बहोत सारे बहोत सारे टेबल और कुर्सियां रखी गई हैं।

दयनीय अवस्था में है क्योंकि इसके शीशे इत्यादि टूट चुके हैं।

चित्र है जो की बहोत सारी मछलियां बेच रहा है।